बच्चे लिख रहे हैं यहां पर मैम भी है यह मैम सभी बच्चों को चेक कर रहे है की बच्चा पढ़ रहा --

यह कुर्सी यहां से सभी आदमी यह कुर्सी खरीद कर यहां से ले जाते हैं यहां पर अनेक सारी बने बने हुए हैं।

ये घर बहुत सुंदर है यह घर में बहुत सारे भगवानों के चित्र लगे हुए हैं ये घर में बहुत से आदमी रहते हैं बहुत से सीढियां भी लगी हुई है ये घर में बहुत ही सुंदर केवारी लगे गए हैं ये घर के बाहर बहुत ही सुंदर --

एवं टोपी पहना हैं चश्मा पहना हैं ये दोनों गोटे यहाँ पर बैठे हुए हैं।

ऑफिस है यह ऑफिस काफी बड़ा है यह ऑफिस पर सभी आदमी यहाँ पर अपने-अपने लैपटॉप में काम करते हैं ।